रेलिंग में रंगल बना सन। मारुति खड़ा बा। आदमी खड़ा बानसन। कलर कलर --

ई गेट ह ओ गेटवा करिए बाटे दुगो खजूल बा एधार दुगो खजूल बा। बोर्ड लागल बा एने गेडल बा रेलिंग से।

पम्प हवे। पेट्रोल पंप पर कितना गाड़ी लागल बा। शीशा से तैयार भइल बा। केतना शीशा लागल बाटे।

फोटो टांगल बा। करिया पहिनले बान सन लाल पहिनले बान सन। सब बइठल बान सन। सब बईठ के देखतान सन। एने सीसा लागल बा। सब लाइट जरता।